दफ्तर बनाया गया है जहापर गवरमेंट के अनेक प्रकार के --

अनेक प्रकार के म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट रख रखे हैं.

टेबल डल रही है यह एक बीच का रास्ता है आगे सामने.

स्टेज बनाई गई है जहां पर ये सभी खड़े होकर प्रे करते हैं.

यह घर के बाहर की पार्किंग --

का है यहां पर एक सपोटी खड़ी है.

चिड़ियाघर की अंदर की है चिड़ियाघर के अंदर एक डायनासोर --

ऑफिस खोला हुआ है ओडी वालों ने.

यहां पर एक एटीएम मशीन लगा रखी है जहां पर एक व्यक्ति पैसे निकलवाता हुआ दिखाई दे रहा है.

पैसा निकलवाने के लिए मशीन के साथ सामने खड़ा है ये पैसे निकलवाने के लिए आया हुआ है।

खाली एरिया की है दोनों साइड पार्क बनाया हुआ है सामने एक.

डॉक्टर नहीं है उसके साथ में कुछ कंपाउडर है जो कि.

मरीजों को दवाई देते हुए दिखाई दे रहे हैं यह एक डॉक्टर नहीं है जो इस महिला को दवाई लिखती हुई नजर आ रही है.

यह तस्वीर एक नदी के बांध की है जहां पर.

समुंदर के किनारे का है जहां पर किनारे के ऊपर.

ये स्टेडियम की बाउंड्री कर रखी है इसके अंदर शीशे ही शीशे लग रहे हैं.

पार्किंग में सकोटी बाइक साइकल खड़ी हुई नजर आ रही है.

दिखाई दे रहा है यह पानी की स्पीड बहुत तेज है यह ऊपर से.

म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट की है म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट ।